इस दृश्य में एक बड़ा सा लकड़ी का कुर्सी दिखाई दे रहा है इसको बड़े अच्छे ढंग से रंगाई किया गया है।

एक श्यामपट्ट है और कई दरवाजे खिड़कियां भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है कमरा बड़ा ही सुंदर लग रहा है इसमें चार पांच लड़कियां --

इसमें एक घुमावदार बच्चों की मनोरंजन का सामान लगा है। इसके पीछे बहुत सारी वृक्ष और बिजली के खंभे भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़े से कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है। इसको कई भाग में बांटा गया है।

बाहर एक ठेला है और हरी-हरी घांस और पौधे नजर आ रहे हैं।

इसके बगल में लोहे का घेराव भी किया गया है इसके पीछे एक दो पुतले नजर आ रहे हैं और बहुत सारे सामान भी दिखाई दे रहे --

इसके आगे लोहे की छड़ों की घेराव दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे बहोत सारे मैदान और हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में एक लंबा सड़क दिखाई दे रहा है। सड़क काले रंग का है। इसके बीच में बहोत सारे खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

इसकी दोनों तरफ सूखे-सूखे पेड़ और सूखी घांस भी दिखाई दे रही है। कहीं-कहीं हरी घांस और पेड़ भी नजर आ रहे हैं।